जो नीले और लाल रंग के हैं।

हरी घाँस दिख रही है।

यह चित्र एक जंगल का है।

बाहर की ओर एक बड़ा गेट दिख रहा है।

कुछ कपड़े भी दिख रहे हैं।

ऊपर की ओर एक पीला बोर्ड हैं।

ऊपर की ओर हरे पेड़ दिख रहे हैं।

सामने की ओर एक महिला और एक पुरुष खड़े हुए हैं।

यहाँ पर एक झांकी दिखाई दे रही है।

कुछ ने सफ़ेद टीशर्ट और कुछ ने पीली टीशर्ट पहनी हुई है।

यहाँ पर काफी सारी सजावट है।

यह चित्र एक खेल के मैदान का है।